मंदिर मे मंदिर सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है।

इस चित्र मे पीछे नीला आसमान हरे भेरे पेड़ और ये चित्र भी पेट्रोल पंप का दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ एक बड़ा खंबा नजर आ रहा है सामने की तरफ एक बड़ा बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे पीछे नीला आसमान और एक मंदिर दिख रहा है जीने ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे है आस पास बहुत घर बने दिख रहे है पीछे हरियाली नजर आ रही है चित्र बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ पेड़ दिखाई दे रहे है।

बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है। पत्थर दिख रहे है। पीछे की तरफ पिलर भी दिख रहे है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। पूल भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।